और उसके पास में एक ग्रिल भी लगा है।

और उसके पास में एक कार भी खड़ी है।

और मशीनें के नीचे एक ब्लैक और एक हरे कलर का मैट बिछा हुआ है।

और इसके पास में एक पेड़ भी लगा है।

और यहाँ पे कुछ आस पास पेड़ भी लगे हुए हैं।

और गेट पे शीशा लगा हुआ है।

और उसके चेहरे पे कुछ बलर लगा है।

और एक बाइक भी खड़ी है।

और इसमें कुछ कंपनियां बनी हुई है।

और कंपनियों में कुछ सामान रखा हुआ है।

और उसमें कुछ डब्बे रखे हुए है।

और इसके बाहर कुछ कार और खड़ी है।

और सामने कुछ आईने लगे हुए हैं।